सामने जंगल दिखाई दे रहा हैं जंगल में बहुत सारा झाड़ी और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

की जर्सी पहना हुआ है और एक का हाथ दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा सोफा रखा गया है जोकि अलग अलग रंग का है और एक आदमीन भी दिखाई दे रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा--

जो कि जल रहा है और पीछे अंधेरा दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम है रूम को पेंट किया गया है और बहुत सारा लाइट लगाया गया है जो कि जग रहा है।

और सामने बोर्ड भी लगाया हुआ है और बहुत सारा पर्दा से सजाया गया है।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

बाइक भी दिखाई दे रहा है बाइक का ऐनक भी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में बहुत सारा पंखा भी दिखाई दे रहा है।

और पोस्टर भी लगाया गया है।

सामने रोड दिखाई दे रहा है और डिब्बा भी दिखाई दे रहा है।

सामने पिट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और अगल बगल बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा--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

और सामने टेबल भी दिखाई दे रहा है टेबुल में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

सामने रोड दिखाई दे रहा है रोड में गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

सामने घर दिखाई दे रहा है और अगल बगल में बहुत सारा कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर से तार भी तना हुआ है और अगल बगल बहुत सारा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा--

और बगल में रोड भी दिखाई दे रहा है।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

मंदिर में डिजाइन भी काटा हुआ है और अगल बगल में बहुत सारा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा--

और सामने एक बाइक भी दिखाई दे रहा है बाइक का चक्का भी दिखाई दे रहा है।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

और बहुत सारे गुब्बारे भी दिखाई दे रहे हैं जो की अलग अलग का रंग का है।

यह एक रूम है रूम में बहुत सारे लोग हैं जो की अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं।